और लाल लाल और सफेद गुब्बारे लगे हुए है।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

इसके अंदर एक खाट गिरी हुई है और टीन शेड गिरा हुआ है ऊपर।

यह एक कमरा है इसके अंदर सामने एक ए_सी लगी हुई है।

यह एक मॉल है इसके अंदर बहुत अच्छा इमारत बनी हुई है।